इक अन्दर एक मोर दिख रहियो है और चारो तरफ एक दिवार बनायोडी है लकड़ी की और लकड़ी की दिवार ने तार उ बाँध्योङी है और कपडा पड़या दिख रहिया है और केला कोई पेड़ है।

इक अन्दर एक आपणे इ फोटो के अंदर आपाने रोड दिखाई दे रही है जका के बीच में एक सफ़ेद कलर की पट्टी है।

एक लड़को लड़को ऊपर की तरफ है लड़किया नीचे की तरफ है बीके पास में एक और है।

ओ सर के ऊपर एक टोकरी रख रखी है सामने एक बच्चो खड़्यो है जाको एक छोटा बच्चा न गोद में ले राख्यो है और पीछ तीन औरता खड़ी है और आदमी उबानो है।

आ एक होली की फोटो है जाका अंदर चार लड़का दिखाई देरया है।

या एक इल्लाहाबाद बैंक की फोटो है जहाँ चार ए.सी. लाग रखी है और बाहर एक खिड़की है।

आ एक फोटो ही इ फोटो के अंदर आपाने गेट खुलो दिखाई दे रहियो है जका क अंदर सफेद कलर की रौशनी आ रही है दो आदमी बार खड्या है।